इस इमेज में मुझे एक रोड दिखाई दे रहा है और दो खम्बा लगे हुए दिखाई दे रहे हैं ।

पुलिस वाला खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

बस खड़ी हुई दिखाई रही है और और पेड़ दिखाई दे रहे हैं।